के लिए यूस करने के लिए --

पेड़ ही पेड़ लगाए दिखाई दे रहे हैं। दोनों तरफ पार्क बना रखा है। बीच का रोड है जो की टाइलों से बना रख्या है।

स्टेट बैंक के अंदर --

यहाँ पर स ए.सी. सैलून --

शादी में आए हुए एक मेहमान के रूप में फोटो क्लिक करवा रहा है।

स्टैंड के ऊपर खड़ी है । यह सभी यात्रा करने के लिए यहां पर आए हुए हैं । यह अपने स्थान के लिए रवाना होने के लिए यहां पर बैठ के जाएंगे बस में।

मस्जिद बना रखी है । यह गोल रंग आकार की है। इसके ऊपर इसे कुछ गुमा इता हुआ दिखाई दे रहा है ।

ये सभी मार्केट का दृश्य है जहां पर ऑटो खड़ी है दुकाने है बाइक गाड़ी चलती हुई नजर आ रही है कुछ पार्किंग में खड़ी है।